एक बाइक और स्कूटी और कार खड़ी हुई है।

यहां बड़े बड़े कुछ जंगले भी लगे हुए हैं।

यहां ऊपर टीन का सेट भी डाला हुआ है जिस पे नीला और सफेद रंग हो रखा है और ऊपर कुछ केवल जा रखी है।

यह फोटो एक गैरेज का है। जहां बहोत सारी छोटी-बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई है।

के बाहर कुछ दो गमले रखे हुए हैं और एक डस्टबिन भी है।

यहां कुछ कूड़ा कचड़ा भी पड़ा है और इस फोटो में बहोत सारे पेड़ पौधे और झाड़ियां भी हैं।

और इसके अंदर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

है जिसमें नीला रंग भी है इसके बाहर कुछ खंबे लगे हुए हैं और इसके पीछे एक टावर भी है।

इस तकिए की बराबर में काले कलर की एक केबल भी रखी हुई है।